यह फोटो आसमान का है।

यहां पर यात्रियों की सुविधा के लिए रात में देखने के लिए लाइटें भी लगी हुई हैं।

यहां पर कुछ लड़कियां हैं।

यह फोटो किसी शहरी क्षेत्र का है।

जो कि ग्राहकों के लिए है।

इस ए_टी_एम में लोग रुपये निकलवाने के लिए खड़े हैं।

यहां पर बहुत ही अधिक हरियाली है।

बच्चे तैर तैरना सीख सकते हैं।